दो ठो बस हे अउ बहुत ही अच्छा सजाया गया है और लड़किया स्कूल है एक ठो पीला कलर का बस भी--

ओर डलिया है कार्टून है बहुत बड़े -बड़े मछली मारे है छोटा -छोटा भी मछली मांगे मारे है मूंगरी मारे है ओर कत्ला -वतला का पता का का मारे है लेकिन बहुत सारा मछली मारे है यह पर आप देख रहे हो --

नइ पता क्या - क्या लिखाया है नइ पता और बहुत ही अच्छा जगह है शानदार जगह है यहाँ पर देख सकते हो आप कितना अच्छा जगह है बहुत --

और नाव चल के तला-तालाब के उस पर जा रहे है सब कोई बहुत जन--

पुजा कर रहे है महिलाओं ने महिलानु तालाब पास आके उहीच कन नउआतरी का छठ का कुछ चीज का पुजा--